इस पेट्रोल पंप पे कुछ सफेद--

यह तस्वीर एक स्कूल की नज़र आ रही है जहां पे मै मैदान में कुछ बच्चे अपने स्कूल की वर्दी पेहने खड़े हैं और --

घेरे के बीचो बीच में एक बच्चा खड़ा नजर आ रहा है मैदान के आस पास में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं स्कूल की मंजिल दो मंजिल है।

फलों को किसी कागज के टुकड़ों के ऊपर रखा गया है जैसे अनार संतरे केले अंगूर--

इस मंदिर के बाहर एक लाइट वाला खंभा और बिजली की तारें भी नजर आ रहे हैं।

जो की बहुत ही साफ सुथरे तरीके में लगाए गए है।

यह किसी कक्षा की तस्वीर लग रही है इस कक्षा में बैठने के लिए--

यहां पर एक कोने में एक कुटिया बनाई गई है जोकि टीन की है और उसे खंभो के सहारे खड़ा किया गया है।

यहां पर मुझे फूल से बने हुए कुछ गुलदस्ते दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं।

यह बगीचों में आजकल ये बनाए जाते है आस पास में कुछ गाड़ियां एवं इमारतें दिखाई दे रही हैं।

एवं पूरे जगह साफ सुथरी है।

यहां पर मुझे एक मैदान दिख रहा है जिसमें--